ये ब्लू जैकेट पहना हेगा येल्लो कॉम्बिनेशन में शूज पहना है गोगल लगाया हुआ है हात में ग्लोव्स हैऔर ये पर्वत के बिच पे पहाड़ के बिच पे खड़ा हुआ हैथोड़े थोड़े ग्रीन पत्ते भी लगे है।

यह एक महिला दिखाई दे रही है जिसने वाइट कलर का पारती का ड्रेस पहना हुआ है।

एकसठ वाला उस साइट पे एक ब्रेड से ब्लैक शर्ट पहने और ब्लैक पैंट पहने हुए लड़का का रही है एक सब्जी मार्केट हे।

ये एक पुस्तक की दुकान है यहाँ बहुत सारी पुस्तक रखी है यहाँ चार व्यक्ति खड़े है जिसमे एक व्यक्ति ने टीशर्ट और पैंट पहना है चेक कलर का--

यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि अपने बाल कटिंग करवा रहा है उपर दीवाल में एक पंखा दिखाई दे रहा है और लाइटे दिखाई दे रही--

ये एक मैकेनिक हैजो की बाइक कार को वेल्डिंग कर रहा है यहाँ एक कार हैजिसके में वेल्डिंग चल रही है यहाँ एक मशीन रखी है रेड कलर की।

ये ए.टी.एम की दुकान स स मशीन लगी हुई है यहां सभी लोग ए.टी.एम के अंदर है और यहां ए.टी.एम की दो मशीन भी दिख रही है और यहां एक लड़का भी दिख रहा है इंस्पेक्टर की वर्दी में है।